यहाँ पर और कोई भी चीजें नहीं है और कुछ पत्ते गिरे हुए हैं।

ये तस्वीर एक दुकानदार की है और यहाँ पर एक आदमी टोपी लगा कर फोन कर रहे है और दूसरा आदमी मास्क लगा कर खडे हुए है।

यहाँ पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं है।

ये तस्वीर एक ए_टी_एम की है जिस ए_टी_एम का नाम स्टेट बैंक --

यहाँ पर इस मोती के पीछे--

चार सफेद रंग की गाडियां है और एक काले रंग की गाडी भी है।

जिस का कलर लाल रंग का है ।

यहाँ पर कोई भी मोजूद नही है ये एक प्ले ग्राउंड है।

ये दुकान एक किरयाने की दुकान है यहाँ पर ऐप्ट मिल --

शोक कर रहे है जिनको फोजी की वर्दी लगा के है और कुछ बच्चे सफ़ेद रंग के --

और एक आदमी एक गाड़ी की फुक बार रहे है।

ये तस्वीर एक खुले मैदान की है जहा पर--

कार है यहाँ पर एक गाय भी है और एक--

अच्छे रंग के फूल है और अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनाई गयी है।

एक शॉप की है जहाँ पे कई सारे पुक्स है जिनमे जनरल साइंस वगेरा बु--

और कई सारी लाइटे लगी हुई है।

ये तस्वीर एक बुक सेलर की है।

और इसके पीछे काफी सारे बुक्स है।

ये तस्वीर एक खुले मैदान की है जहां --

हरयाली है यहाँ पर काफी सारे पेड़--

और साइड में कुछ बैठ ने की चेयर्स वगेरा भी है।

यहाँ पर कोई भी आदमी नही दिखाई दे रहा है यहाँ पर --

बी है और कुछ पानी की बॉटले भी है यहाँ पर ।

यहाँ एक तस्वीर एक भाग की है जहा पर काफी सारे छोटे छोटे --

काफी किस्म के फूल लगे हुए है।

हरे कलर की है और यहां पर पेड़ भी कुछ दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी को हेलमेट लगा कर है।

जहा के कारपेट का कलर सफ़ेद और--